आसमान में बादल छाए हुए हैं आसमान का रंग नीला है।

भवन के अंदर भी एक चार पहिया वाहन खड़ी है सामने में वहां के कर्मचारी और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इसमें तीन जन स्विमिंग पूल में आनंद ले रहे है पीछे में स्लाइडर और फिसलने के लिए बनाया गया है बाउंड्री नीले तथा सफेद रंग का है।

इसने सफेद रंग का एप्रन पहन रखा है कुछ रोगी भी नजर आ रहे हैं पीछे सफेद रंग का दीवार है।

ये पूरी हरियाली का तस्वीर है जिसमें दूर पर कई घर दिख रहे हैं तथा एक बहुत ही पुराना सफेद रंग का बाउंड्री दिख रहा है।

यह दो पहिया वाहनों का शोरूम है जिसमें चार दो पहिया वाहन खड़े हैं दाएं तरफ का दीवाल शीशे का है।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

यह एक मोबाइल और कंप्यूटर के काम वाली दुकान है जिसका बोर्ड लाल रंग का है और उस पे नीले रंग से लिखा हुआ है।